ग्राउंड में भी छोटी छोटी घास उगी हुई है।

एक ने नारंगी रंग के कपड़े--

और घर के आगे एक बुलेट खड़ी है जो की क्लासिक मॉडल है।

और ये बर्तन सफेद रंग के है और ये अलमारी पर कांच के शीशे लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है सामने की तरफ जो की वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

और यह इमारत सफेद रंग की है जिसके बाहर एक बहोत बड़ा बगीचा भी है।

इस दुकान के अंदर सोने के गहने रखे हुए हैं और एक नेकलेस रखा हुआ है।

दशन नर्सिंग होम गोल्डन कलर से लिखा हुआ है।

यह एक दर्जी की दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम एम_एन टेलरिंग हाउस है।

और इस दुकान के बाहर बगल में दो व्यक्ति भी बैठे दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ने शाल ओढ़ा हुआ है।